यहां पर मुझे छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

पीछे बहुत सारी कुर्सियां रखी है।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

जिसके ऊपर से एक लोहे का बड़ा पूल जा रहा है।

बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं कारें दिखाई दे रही हैं।

बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके बहार कुछ आदमी दिखाई दे रहे है एक बोर्ड लगा हुआ है।

बाकी सारे कांच के शीशे लगे हुए है।

पानी की बोतल रखी हुई है पीछे दीवार पर कुछ बैनर लगे हुए हैं।

अंदर लोहे के काफी सारे बड़े बड़े एंगल दिखाई दे रही है।

एक फोटो स्टेट मशीन दिखाई दे रही है।

यह एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे बहुत सारे लोहे की छोटी बड़ी बेंचे दिखाई दे रही है।

कुछ बोर्ड लगे हुए हैं ऊपर कुछ पोस्टर लगे हुए हैं पंखा दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे एक बड़ा ट्रक दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे पीछे कुछ घर दिखाई दे रही है।

एक बड़ी रस्सी दिखाई दे रही है बिजली के खंभा दिखाई दे रहा है।

इसके अंदर बहुत सारे रसगुल्ले रख खे हुए हैं।

बेसन के लड्डू रखें हुये हैं बहुत सारी बरफी दिखायी दे रहीं हैं।

लोहे के कुछ गाटर दिखाई दे रहे हैं।

इसमें मुझे अमरूद दिखाई दे रहे हैं।

कुछ की बोतलें टंगी हुई है।

यहां पर मुझे एक बड़ा घर दिखाई दे रहा है।

प्लेटें थालियां दिखाई दे रही है फूलों की कुछ माला दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे कुछ दुकानें दिखाई दे रही है एक एक्टिवा दिखाई दे रही है।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

पीछे एक दरवाजा दिखाई दे रहा है एक घड़ी दिखाई दे रही है।

पीछे कुछ हण्डोले लगे हुए हैं।

यहां पर मुझे एक लाल कलर की पियानो दिखाई दे रही है।

बिजली के कुछ तार दिखाई दे रहे हैं।